यहाँ एक सड़क है जो शायद बस स्टेंड लग रहा है। ऊपर से आदमी लोग आर-पार हो रहे है बस भी खड़ा है।